और सामने में दो बाइक भी लगे हुऐ --

और अ लाल और उजले बैलून से इसे सजाया गया है। दो व्यक्तिी भी खड़े हैं।

भवन है और सामने में दो लोग भी हैं। भवन जो है वह --